ये है एक डी.जे. हाउस चौक सराई रोड के गया हुआ हुआ डी.जे. बजाने वाला --

थोड़ा बहुत पेड़ भी है और उधर आप दूर के दिखेंगे तो उधर आप लोग को दिखेगा दो टॉवर है जो नेटवर्क के लिए कम करता --

और बहुत सारा पेड़ दिख रहा है शायद ये किसी घर का बाहर का नक्शा है जहां पर वॉल भी लगा हुआ है और एक गेट खुला है।

एक खूबसूरत तस्वीर दिख रहा है बहुत पुराना तस्वीर है जहा पर बहुत पुराना बिल्डिंग है बहुत आर्किटेक्चर डिजाइन मे बनाया गया हुआ एक बिल्डिंग है।

यह तस्वीर मे देख सकते हैं की एक पानी जमा किया गया हुआ पॉण्ड है जहाँ पे पानी जमा हो के बेहता है और ये खेत में जाके मिल जाता है। जहा पर बहुत सरा पोधा उ-उगाने का--